ओ शायद यहाँ जल भराव सा भी है मतलब जब पानी बढ़ती होगी यहाँ पर पानी भरता भी होगा--

पहाड़ से नदी बेह रही है नदी का प्रवाह तेज है और जो पहाड़ है वो रूप से कटे-कटे से दिख रहे है हल्का धुरसर धुरसर रंग का है।

और पितुम के सामने थोड़ा सा पानी भरा हुआ है और एक माल वाहन गाड़ी खड़ी हुई है जो नारंगी रंग की है साथ में पेड़ दिखाई दे रहा है और एक डामरी कृत सड़क दिखाई दे रहा है ।

स्टेड बैंक का ए_टी_एम और साथ में बैंक दिखाई दे रहा है सामने कुछ गाड़िया सड़क खड़ी और किनारे पे एक छोटा-सा दुकान दिखा दिखाई दे रहा है जो मम ती ऐसा कुछ लिखा हुआ है।